पुल के उस पार से पानी आ रहा है।

है इसके अगल बगल छोटे छोटे पेड़ हैं।

टेबल पे एक वॉटर बोतल दो ग्लास और दो कटोरी--

है वहां की यह ऊंची बिल्डिंग है।

में छड़ के बंडल और एक टेबल कुर्सी बाइक ल--

फ्रिज के ऊपर मेज--

छ बड़े बड़े पेड़ और--

जो कुछ सामान उठा--

इसमें एक ए_सी भी लगा हुआ--

इसके पीछे एक बड़ा पेड़ है इसके आगे--